यह एक हॉल है ट्रेनिंग हॉल है जिसमें लाइट बत्ती दिख रहा है।

साइड में वृक्ष दिख रहे है।

खुला आसमान है पौधे है।

मंदिल है। मंदिर येलो कलर का मंदिल है।

इसपे ऑटो इस पे बात कर रहे कुछ यात्रगण ऑटो पे तिरपाल रखा हुआ है । मौसम मौसम खराब हैं।

यह फील्ड है फील्ड में लोग बैडमिंटन खेल रहे बैट बॉल खेल रहे हैं।

पहाड़ है। खुला आसमान दिख रहा है। पहाड़ के सामने एक तालाब है।

यह स्टेडियम स्टेडियम है जिसमे दुर्गा मां का अ दुर्गा माई बैठी हुई हैं।